व्हाइट कलर का और यहाँ एक पपीता का पेड़ भी है और उधर कुछ और तरह की पेड़ भी दिखा रही है वहाँ तो लाल रंग का कु--

इतना बढ़िया पेड़ देख दिख रहा है एक और दूर से ज़्यादा पेड़ दिखा रही है और--

यहाँ तो कुछ स्कूल का कल्चरल एक्टिविटी चल रहा है सब कुछ ब बच्चे यहाँ सब कुछ व्हाइट कलर ड्रेसेस पहना हुआ है और तो--

यह यह तो एक रोड है यहाँ तो ज्यादा लोग खड़ा हुआ है ऑ ऑटो म ऑटो पे जाने के लिए रुका हुआ है।

यहाँ एक आदमी फोटो खींच रही है यह तो बिल्डिंग का कं-स्ट्रक्शन का जैसे लग रही यह तो सिविल इंजीनियर जैसे लग रहे हैं।

यह ट्यूब का कलर ग्रीन कलर है और यहाँ सब कुछ स्नेक प्लांट्स ही ज्यादा दिखा रही है और कुछ तरह की प्लांट्स भी है इधर--

यह तो एक हॉस्पिटल है ये यह तो डॉक्टर रूम है वो वहाँ डॉक्टर बैठा हुआ है वो तो पेशेंट से बात कर रही है पेशेंट को --

वो तो ज्यादा छोटा दुकान है और वहां तो बिस्किट पैकेट कुछ दिखा रही हैं और पैकेट्स ले--

ये तो काली रोड है यहां तो एक बाइक दिखा रही है दूर से एक--

और वहां ना अं रोड वाइंडिंग कर लिया था बिल्डिंग सब कुछ--

और वहाँ कुछ गाड़ियाँ हैं अं दो एक व्हाइट जीप है एक कार है और बाइक्स भी ज्यादा हैं।